एक बोहोत बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है अ जिसमें की एक प्रैक्टिकल लैब बना दिखाई दे रहा है। इसमें बोहोत सारे काउंटर बने हैं।

और नीचे फर्श पर ऑफिस में सफ़ेद कलर की टाइल्स लगी हैं और लाइट जल रही है।

ऊपर की दीवार की पट्टी नीले कलर से पुती है। इसमें एक पंखा लगा है। एक लाइट लगी है। नीचे हरे कलर का कालीन बिछा हुआ है। बहोत सारी जिम की --

बोहोत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। एक --

लोहे का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे। बिजली के तार दिखाई दे रहे। एक भवन बना दिखाई दे रहा है।

लगा हुआ दिख रहा है। एक बहोत बड़ी पानी की सीमेंट की टंकी बनी हुई दिख रही है। बिजली के खंभे दिख रहे हैं।

जिसके अ सामने कुछ जगह में गार्डन बना हुआ है। सार्वजनिक शौचालय में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सामने सीढ़ियों पे एक आदमी बैठ दिख रहा है।

अ कुछ-कुछ विज्ञापन लगे हुए हैं। बस के सामने दो डस्टबिन रखे हुए एक खम्बा बना हुआ है जिसमें बहुत सारे विज्ञापन चिपके हैं।

भी लम्बी-लम्बी लकड़ियाँ लगी हुई है। कुछ तार लगे हुए दिख रहे हैं और इसमें टेंट में कुर्सी टेबल रखे हुए दिख रहे हैं।

इसमें कुछ दुकानें बनी हुई दिखाई दे रही है। कोचिंग सेंटर है जिसके ऊपर जिसके बाहर को संस्कार टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है।

और विशाखा डेयरी का विज्ञापन लगा हुआ है और उन काउंटरो के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं।

इसमें बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जिसमें कि बहो जिसमें तीन बसें ख़ड़ी हुई हैं पीछे की तरफ और भी कुछ बस खड़ी हुई हैं।

भवन की खिड़कियों में ए सी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ खम्बे दिखाई दे रहे हैं। भवन के सामने एक लोहे की नसैनी रखी हुई दिखाई दे रही है। भवन के सामने बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक रेसटूएंट दिखाई दे रहा हैं जिसमें लकड़ी का काउंटर बना हुआ हैं। काउंटर के सामने एं कोई-न् दो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है। ऊपर की तरफ कुछ झूमर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक औरत एक आदमी को वैक्सीन लगते हुए दिख रही --

इसमें एक मैदान दिखाई दे रहा है। मैदान में कुछ गुब्बारे लगे हुए है। लकड़ी का खंबा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे कच्ची मिट्टी दिखाई दे रही है।

लोहे की जाली के सामने सीमेंट का टाइल्स का बना हुआ एक बहोत बड़ा फाउंटेन दिखाई दे रहा है।

में एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।